यहाँ पर मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के आस-पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और बाहर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर चिल्ड्रन बुक्स --

और कुछ जर्किंग टंगी हुए है और कुछ शर्ट रखे हुए है।

यहाँ पर हरी घास लगी हुई है घास के ऊपर पिंक कलर के फूल लगे है येलो कलर के फूल लगे है।

के ऊपर बेक काकरी एवं गिफ्ट हॉउस लिखा है शॉप के बाहर --